दो कुर्सियाँ नजर आ रही है जिन्हे कपड़ो की मदद से सजाया गया है।

यह चित्र एक कमरे का नजर आ रहा है जहां पर एक व्यक्ति अपनी एक टांग उठा कर दिखाता हुआ नजर आ रहा है टांगों पर चोट के निशान वे चोट की पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है।

यह चित्र एक सब्जी की दुकान का नजर आ रहा है जहाँ पर अनेकों तरह की सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं वै कुछ फल भी लगे हुए नजर आ रहें हैं एक व्यक्ति नीले रंग की कमीज पहन कर दुकान के अंदर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

व ऊपर की ओर शाम सुपर मार्केट लिखा हुआ नज़र आ रहा है बाहर की ओर कुछ वाहन खड़े हुए नज़र आ रहे हैं व एक व्यक्ति जाते नज़र आ रहा है।

सामने की ओर कुछ खाने व पीने की दुकान नजर आ रही है उस से आगे की ओर कुछ फल व सब्जियों की दुकान नजर आ रही है एक महिला सामने आती हुई नजर आ रही है।

वे कुछ पूजन चल रहा है यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यह चित्र एक दवाइयों की दुकान का नजर आ रहा है जहाँ पर पीछे की और बक्सों में काफी दवाइयाँ रखी हुई नजर आ रही है।